और उधर ही दो बैंच पर दो आदमी बैठे बातें कर रहे हैं।

और बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर गायों के रहने का स्थान है और वहां पर बहुत सारी गायें भी हैं।

इस पिक्चर में मुझे बहुत बड़ी सी नज नदी नजर आ रही है।

और उसके बीच में नदी है जिस पर से झरना आ रहा है।

मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि सीट पर बैठा हुआ है।

व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ भी नजर आ रहा है।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

इस पिक्चर में मुझे एक--

यहां पर कोई भी नहीं है और बहोत सारी घास है और एक बाइक खड़ी हुई है।

थोड़ी सी दूर पर स्कूटी से एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस जगह पर बहोत उजाला भी है।

इसके आस पास बहोत सन्नाटा है।

ऊपर बहोत बड़ा सा झूला लगा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक मेट्रो स्टेशन दिख रहा है।

पिक्चर में मुझे एक बहुत बड़ी शॉप दिख रही --

बहोत सारी खेलने की और घर को सजाने की चीजें हैं।

जिसमें बहुत सारे तरीके के कपड़े हैं।

लोग उस रोड से गुजर रहे हैं और कुछ लोग वहां पर सामान भी खरीद रहे हैं।

तरफ दो गा दो गाड़ियां तीन ख दो - तीन गाड़ियां भी खड़ी हैं।

इस पिक्चर में मुझे पूजा करने का मंदिर नजर आ रहा है जिसमें एक मूर्ति रखी है।

पूजा का सारा सामान रखा हुआ है।

शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है।